पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर ये बरान्दा दिखाई दे रहा है जहां पर --

चुकंदर और भी बहोत सारी सब्जियां दिखाई दे रही हैं। यहाँ में आदमी दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर एक है रिसेपसन दिख रहा है।

और कुछ दुकानें लगी हुई हैं। एक छतरी लगी हुई है और --

और यहाँ पर कुछ पोस्टर चिपके हुए हैं। यहाँ पर एक बड़ा पोस्टर चिपका हुआ है।

ओर एक फ्रिज रखा हुआ है जिसमे कोल्डरिंगस बगेरा रखी हुई हैं और यहाँ पे --

और यहाँ पे एक पम्प लगा हुआ है जिससे पानी न्-जा रहा है। पूरे उसमे --